उस पर एक लड़की का फोटो बना हुआ है।

एक आदमी लाल और एक काले रंग के कपड़े पहन कर खड़ा हुआ है।

एक हरे रंग की पेड़ दिख रही है जमीन पर कुछ हरे रंग की घास दिख रही है।

कुछ लोग कुर्सियो पर बैठे हुए है कुछ टेबल रखे हुए है।

ये एक जगह का चित्र है जिसमे एक पीले रंग का घर दिख रहा हैं।

जिसमें कुछ लोग दिख रहे --